ये हमे कपड़ों का शोरूम लग रहा है यहां पर तीन पुतले हैं जिनको अलग-अलग कलर के ब्लेजर और शर्ट पहनाए गए हैं।

हॉस्पिटल है। इसमे आँख नाक कान आदि का डॉक्टर है और अन्य विभाग का डॉक्टर है। और यह बाह्य कक्ष है। अंदर डॉक्टर बैठता है।

यह एक जंगल जैसा है। यहां पर सारे वृक्ष सूखे हुए हैं। यहां की मिट्टी भी सुखी पड़ी है। और यहां पर सात-आठ गो-भुट्टे पड़े हुए हैं।

अंदर में घोर अंधकार है। शायद एक कोई व्यक्ति है और बाहर काउनटर गुलाबी रंग का है।

एनटी मोबाईल रेडियेसन वगेरे के लिए बनाया गया है। बाहर मे लाल बोहत -सी लाल चेयर रखी हुई हैं। सीसे का दरवाजा है लाल पर्दा है उ खिड़की है।

यह कोई स्टेशनरी की दूकान है। इसमे दोनों तरफ किताब रजिस्टर ये सब लगे हुए हैं। सामने मे एक छोटा-सा भगवान का मंदिर बना हुआ है।

यह एक रेस्ट्रोरेंट है चाय अदा बोलकर कुछ जिसमें लिखा है स्वाद जो पास लाये।

इसमें बाहर में बहुत-सी गाड़ी खड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है लोग खड़े हुए हैं साइकिल पर दो व्यक्ति हैं। और यह बहोत लम्बी-चौड़ी दूकान है और बाहर पूरा अँधेरा है अंदर बहोत रौशनी है।

हर किसी के हाथ में वाईलोन है। दीवार पर एक मछली टंगी हुई है और एक मगरमच्छ टंगा हुआ है। और बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में।

कोई शहर है जहाँ पर चार-पांच गाड़ी खड़ी है। ऊपर में छावनी बना बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि जैसे यह किसी नेता का या किसी राजनीती की जगह हो।

किसी के हाथ में तगड़ी है कोई मसाला लेके सीढ़ी पर चढ़ रहा है मिस्त्री भी है साथ मे और दूर दूर तक ब्रिज बड़े बड़े दिखाई दे रहे है बांस गड़े हुए है छड़ लगी हुई है।